और डोर जो है ग्लास का बनाकर रखे हुए है ग्लास का डोर है।

यह जो दुकान है वह एक घड़ी की दुकान है घड़ी के साथ साथ कुछ खिलौने भी रखे हुए हैं बच्चों के बहोत सारी मल्टी कलर का एक घड़ीयो का दुकान है।

सीलिंग जो है सफेद कलर की है और नीचे टाइल्स दिख भी नहीं रही है खिलौने बहुत सारी रखे हुए है और बहुत सारे गिफ्ट भी रखे है अनपैक्ड गिफ्ट है।

सामने फसल लगी हुई है धान का और बाकी सारे जो काम करने वाले मजदूर है वो यहां पे बिल्कुल भी नहीं है सायद वो काम करके जा चुके है।

कुछ लोग यहां बातें कर रहे हैं और एक वेटर है जो टेबल साफ कर रहा है हर टेबल पे स्टील के जग रखे हुए हैं पानी से भरा हुआ--

अ ऊपर में सीलिंग जो है सफेद कलर से पेंट है।

यह एक हॉल है और हॉल क्या कहें इसे यह एक ग्राउंड है।

यह स्कूल के बच्चे हैं जो क्रिसमस पर परफार्म कर रहे हैं।

आस पास बहुत सारे टीचर है दो ठो बस खड़ी हुई है इन बसों में बच्चों बैठ कर के जाते है।

अंदर काम करने वाले मजदूर बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं।

यह जो चित्र है यह चित्र एक नर्सरी का चित्र है बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत से फूल खिले हुए है।

नीचे मार्बल और फर्श लगी हुई है आदमी जो है दूर दूर में ख अ गैपिंग बना बनाकर के सोशल डिस्टेंस का पालन करके--

सामने एक छोटा सा कार है जो बच्चों का टॉय कार है।

भाई चारा आपसी मत भेदी यहां पे सामने--

आसमान बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है नीले रंग का।

यह एक एयरटेल का ऑफिस है यहां पे सिम नए बनते हैं बिगड़ते हैं।

यह चित्र के अनुसार ये चित्र जो है बस अड्डे का है।

इस फोटो में हमें दिखाया गया है यह एक सड़क का फोटो है सड़क पे एक डी_जे का--

दोपहर का समय है तो यहां पे ज्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं है।

निकल रही है और एक स्कूल बस है जो पेट्रोल पंप की ओर मुड़ रही है।

और तार बहोत सारे है जो आस पास उलझे--

यहां पे स्टेज शो हो रहा है इस स्टेज शो में यहाँ पे कुछ लोग अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं।